एक आदमी काउंटर पर बैठा हुआ है कुछ चेयर दिखाई दे रही है।

टिशू पेपर दिखाई दे रहे हैं ठंडे की बोतल दिखाई दे रही है।

बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

कैमरे दिखाई दे रहे हैं ए_सी लगी हुई है।

एक जनरेटर दिखाइए दे रहा है साइकिल दिखाई दे रही है।

बहुत सारी बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है एक मेडिकल स्टोर दिखाई दे रहा है।

पीछे पर्दा दिखाई दे रहा है कुछ जो टोप पे रखी हुई है।

ये बहोत बड़ी मिठाई की दुकान दिखाई दे रही है।

बोर्ड दिखाई दे रहा है गिलास दिखाई दे रहे हैं एक कैंपर रखा हुआ है।

कांच की सीसी दिखाई दे रही है एक काउंटर दिखाई दे रहा है।

ये मच्छी मार्केट दिखाई दे रही है। एक तराजू रखी हुई दिखाई दे रही है।

पैसे दिखाई दे रही है पीछे साइकिल खड़ी हुई दिखाई दे रही है बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं।

पंखे दिखाई दे रही है लैंप दिखाई दे रही है।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

पेट दिखाई दे रहे हैं दिखाई दे रहे हैं।

कुछ खिड़कियां नजर आ रही है एक डब्बा रखा हुआ है।

एक यह बच्चों की क्लास दिखाई दे रही है।

ये बहुत बड़ा खेत दिखाई दे रहा है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रही है रेतीली मिट्टी दिखाई दे रही है।

कुछ पन्नी दिखाई दे रही है एक लेटर रखा हुआ है एक ढक्कन दिखाई दे रहा है।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

ये बहुत बड़ा एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

एक खड़ा दिखाई दे रहा है बहुत सारे घास खड़ा हुआ दिख रहा है।

एक विंडो दिखाई दे रही है। एक बलफ दिखाई दे रहा है।

ये एक दुकान दिखाई दे रही है जिसके अंदर खाने का सामान दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे पंखे दिखाई दे रहे हैं एक मग्गा दिखाई दे रहा हैं।

एक स्टूल दिखाई दे रहा है कुछ बोर्ड दिखाई दे रहा है।

दीवाल पर दिख रहा है एक बोतल दिखाई दे रही है हैंडवाश --

इसमें मटके नजर आ रहे हैं एक लकड़ी का टुकड़ा नजर आ रहा है।

एक नजर आ है एक कुर्सी पर लड़की बैठी हुई है।

पीछे दीवाल दिखाई दे रही है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।